प पाइप से के पानी के द्वारा प्रेस लगाते हुए इस पानी को गाड़ी को धोया जा रहा है गाड़ी को वाइट_कलर की स्कार्पियो है।

मोटरसाइकिले भी दिख रही हैं जो की टम्पू से कुछ दूरी पर हैं कार और एक बस दिख रही है और एक सामने में छपरी है टपरी दिख रही --

एक शख्स नाई की दुकान पे कटिंग करता हुआ दिख रहा है ये नाई की है जिसके द्वारा एक शख्स के नाई कटिंग करी जा रही है शख्स फिर कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का रंग लाल है शख्स के ऊपर एक कपड़ा डाले हुए हैं जिसके ऊपर ऐसे--

दिख रहै हैं जो कि इस मिट्टी या सीमेंट को बनाने की तैयारी कर रहै हैं सीमेंट बनाने के बाद इसे मजदूरों द्वारा सीमेंट को प्लास्टर या --

ऑरेंज एंड पीच और एंड पर प्ले टीशर्ट पहने हुए है चार शख्स उन्हैं देख रहै है चार शख्स मौज काड़ रहै है।

शेरवानी है दूसरी भी शेरवानी तीसरी चपाल कट कुर्ती है कोट कुर्ती जकार कट है जिसमे की तीनो बहुत ही अच्छे है और अल्सतर का काम हो रहा है ये बहुत ही महंगे होते है ये कोट --

बयान होंगे यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये सभी लोग बहुत ही --